यहाँ पर हमे एहे ज़मींन पर बच्चे बैठे हुए दिखाई दे रहे है और उनके हाथों में हमें सेब दिखाई दे रही है।

यहाँ पर हमें एक बड़ी सी ट्रैन दिखाई दे रही है और लोगों दिखाई दे रहे है चेयर रखी दिखाई दे रही है।

यहाँ पर हमें सड़क दिखाई दे रही है एक महिला दिखाई दे रही है जाते हुए एक पुरुष भी दिखाई दे रहा है।

बॉक्सेस बने हुए है और यहाँ पर चेयरे भी हमें दिखाई दे रही है उसमे अ-ब तीन बैठे भी दिखाई दे रहै है।

यहाँ पर हमें एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है आ अ दीवारों पर यहाँ पर पेंटिंग बनी हुई दिखायी दे रही है।

छोटे-छोटे और यहाँ पर सामने सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है वायर्ड --

और एक बाल्टिन रखी दिखाई दे रही है और यहाँ पर आइसर की दिवार बनी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पर हमें एक चर्च दिखाई दे रहा है आइड-साइड यहाँ पे पर्दे लगे हुए दिखाई दे रहे है।

झाड़ी-ऊनि आपको दिखाई दे रही है सामने एक वॉचमैन खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है चेयर लगी हुई दिखाई दे रही है।

ऊपर चददर की छत्त दिखाई दे रही है एक व्यक्ति सामने बैठा हुआ दिखाई दे रहा है टियूबलाइट जलती दिखाई दे रही--

यहाँ पर से अ हमे एक बड़ा-सा खेत दिखाई दे रहा है जहाँ पर हरे-हरे घास हमे दिखाई दे रही है।

और यहाँ सामने भी हमे पत्थर दिखाई रहे है और सामने हमे जाने का रास्ता भी दिखाई दे रहा है ।